बहुत सारे पेड़ है कुछ घंटियां भी लगी हुई है।

ड्रेस पहनी है ब्लैक कलर की टॉप पहनी है।

जोकि पीले और ग्रे कलर की है उसे बहोत सारी दुकाने हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है ये किसी--

इस तस्वीर में जो फोटो है ये किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है।

सब बढ़िया दुकानो ऊपर टेडी बियर भी रखा हुआ है।

जालियां लगी हुई हैं लाइट के बड़े बड़े खंभे भी हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो है यह एक बस स्टैंड की है।

दो ऑटो भी खड़े हैं एक ब्लू कलर की बस खड़ी है।